ये एक बड़ा सा मैट्रो स्टेशन है।

ये एक नीचे वाल गमले रखे हैं बहुत सारे।

ऊपर झालर लटके है लाइट वाली और बगल में एक सफेद कलर की कार खड़ी है।

ये एक बड़ा सा मस्जिद है जिसके सामने वाला बड़ा सा गेट है लोहे का हरे कलर में।

और सामने लोहे के डंडे लगे हैं लाइन से उनपे तार लगे हैं।

ग्रीन कलर के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जिसमे बगल में बड़ी सी पानी की टंकी बनी हुई है।